यहाँ पे गाड़ी चलती है गाड़ी के भी माध्यम से आना-जाना होता है हम लोग को।

यहां लग रहा है कुछ पूजा हो हो रहा हैचारों तरफ चारों तरफ फूल से सजाए हुए है बहुत अच्छा दिखने मे लगता है।

यह एक फूल के दुकान है। इस इस फूल के दुकान से हमलोग फूल खरीदते हैं। फूल खरीद के मंदिर में हमलोग पूजा करते हैं और इसको मन मन्नत पे भी सजाया जाता है। इस फूल से हम लोग को बहुत काम होता है।

औकाद ही नहीं है जो हम लोग इसमे जायेगे और बच्चे लोग को कुछ खरीद के खिलाएं --

यह एक किताब कि दुकान है इसमें बुक बेची जाती है।